ये कोइ बास का डिजाईन किया हुआ है ये काफ़ी अच्छा बना हुअ है बस के--

चाय पिने वाली कप है गिलाश भी है बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके सजा कर के रखे हुए हैं काफी अच्छे - अच्छे कप है ।

काफी अच्छे डिजाइन के बने हुए हैं। और --